हरिहर आवक्षेत्र सोनपुर मेंले--

इस तस्वीर में एक कपड़ों का --

रही हैं यहां से माल उठाया जा--

यह तस्वीर एक स्टेशनरी शॉप --

इस तस्वीर में एक कंप्यूटर दिखाई दे--

पर गाड़ियों की--

जा रहें हैं।

पकाकर खाते हैं।

अमृतसरी कुलचा व--

रहा है यहां कार धोई--

यह देखने लायक --

रही है जहां लोग अपने पाप धो रहे--